कथई और व्हाइट कलर का पाइप में व्हाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है नीचे।

घांस का कलर भी ग्रीन है पीछे साइड पेड़ नजर आ रहे है पेड़ भी ग्रीन कलर के एक रोड नजर आ रही है रोड पे व्हाइट कलर का पट्टा नजर आ रहा है।

फूल लगे हुए हैं सामने और पत्तियां दिखाए दे रही हैं ग्रीन कलर कि एंड रेड कलर के फूल बहुत सारी बाइक एंड स्कूटी खली हुई हैं ऊपर बादल दिखाए दे रहे है सामने रोड दिखाए दे रही है।

दो दरवाजे हैं। ऊपर एक खिड़की है। साइड में एक खिड़की नजर आ रही है तिरपाल बिछा हुआ है उसमे कुछ समान पोटली में रखा हुआ है। जमीन नजर आ रही है। जमीन में कचरा पढ़ा हुआ है। ऊपर एक पेड़ नजर आ रहा है जोकि हरे कलर का। आसमान व्हाइट कलर का है।

यहाँ पर ऑटो नजर आ रही है। बोहोत सारी बाइक नजर आ रही है। बोहोत सारे ब्यक्ति नजर आ रहे हैं। फ्रूट की दुकान नजर आ रही है। फ्रूट में सेब नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पेड़ नजर आ रहे हैं जो कि ब्लैक एंड ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। आसमान नजर आ रहा है वाइट कलर का।

है ना और ऊपर बादल नजर आ रहा हैं। ऊपर भी एक मशीन नजर आ रही है। मिट्टी का छोटा पहाड़ नज़र आ रहा है।

और यह रेक टाइप के बने हुए है यहाँ पर इसके ऊपर जूते रखे हुए --